ये नदी नदी के ऊपर बोहोत बड़ा पुल बना हुआ है और बोहोत बड़े बड़े अ यहाँं पे जो ट्रांसपोर्ट वेहीकल होते हैं जैसे ट्रक है और आपका बोहोत सारे इनके टायर के नाम अकॉर्डिंग नाम होते हैं।

यह देखने में बड़ा सुन्दर सा हॉल है और सामने बड़ा अच्छा सा गेट लगा हुआ है। यहाँ पे एक डिज़ाइनर चेयर --

ये बजाज कंपनी का शोरूम है। यहाँ पे सारी बजाज की बाइक मिलती हैं।

ट्रेन थोड़ी सी आत आती हुई दिख रही है बिलकुल थोड़ी सी लेकिन बहुत सारी लाइटों से जगमाता हुआ प्लेटफार्म बड़ा सुन्दर लग रहा है और इसकी फ्लोरिंग भी बड़े अच्छे टाइल्स से की गयी है सीमेंटेड टाइल्स |

ये यहाँ सामने पैसन बाइक खड़ी है आगे गाड़ी है दूसरी बाइक भी साइड में खड़ी हुई है बड़ी सुंदर सी फुटपाथ जैसा एक अच्छी जगह बना के आराम से और वहाँ पे बाइक्स पार्क की गयी हैं।

ये सामने कानपुर सिक्सटीफोर किलोमीटर आगे के लिए रोक कर रखें सामने होता है कानपुर सिक्सटीफोर और इसके सामने है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और एक पूरा बड़ा सा नेटवर्क टायर टावर भी लगा हुआ है।